पंछीयों की फोटो बनी हुई है जो काफी दिख रही है। कही प्रकार के कलरो से बनायीं गई है। काफी सारे पंछी या है यहाँ पे जो साफ देख रहे है।

यह देख रहे है। हम कुछ कुछ साबुन का प्रचार है यहाँ पे डब्बे रखे हुए है और बहुत बड़ी दुकान है ये --

टेबल लगी हुई है काफ़ी लम्बी है यहाँ बरामदा है वो भी काफ़ी लम्बा है टेबल हैं काफ़ी सारे पड़ी हुई है यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं कुछ सामान बना रहे है।